आप देख रहे हैं-- यहाँ वाइट और रेड से पोता हुआ है और पीछे एक बोर्ड भी लगा हुआ है ब्लू कलर में और ये खिड़की बनी हुई है और टेबल रखी हुई है बहोत सारी और यहाँ बच्चे ड्राइंग बना रहे हैं अपनी--

कई लोग खड़े हुए हैं और ये ऑटो है और पीछे भी ऑटो आ रहा है।

चेयर भी टक री होंगी टेबल भी हैंऔर यहाँ पेड़ भी लगा हुआ हैं।

देख रहे होगे आप ये गर्ल्स कुछ बना रही हैं बहोत अच्छे-अच्छे ड्राइंग बना रही हैं कुछ यहाँ टेबिल भी दिख रही होंगी बहोत सारी और चेयर भी दिख रहे होंगे --